कुछ नाव लंबी है और कुछ गोल भी है जो कि छोटी-छोटी हैं ऊपर नीला आकाश दिख रहा है और पानी का रंग मटमैला सा दिख रहा है।

बस टर्मिनल पर बहुत सारी बसें यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही है।

यहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा है जहा पर बहुत बड़ी जगह में लोहा बांधा जा रहा है।

यहाँ पर एक शादी का मंडप तैयार हो रहा है जिसमे चार सिल्वर कलर के पिलर लग हुए हैं।